और कुछ पौधे वगैरह भी गमले रखे हुए पौधे बहोत ही बढ़िया मजेदार घर लग रहा है।

यह औरंगाबाद के किसी टूरिज्म पैलेस का नजारा है यहां पर कुछ लोग घूमने के लिए आ रहे हैं।

यह पिक किसी मेडिकल स्टोर का लग रहा है।